इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल जोड़ें
पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कैसे लिबरऑफिस बेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म को बदलें
हमने पिछले ट्यूटोरियल में फॉर्म के इस चित्र को भी देखा था जिसे हमने बनाना और उसमें बदलाव करना शुरू किया था
और जब हमारी डिजाइन पूरी हो जाती है हमारा फॉर्म इस प्रकार से दिखेगा
यहाँ ध्यान दें हम बुक्स इश्यूड टेबल में पहला रिकॉर्ड देख रहे हैं
और हम लिस्ट बॉक्सेस में बुक आईडीएस और मेंबर आईडीएस के बजाय असली बुक टाइटल्स और मेंबर नेम्स देख रहे हैं
यहाँ रिकॉर्ड को सेव करना बदलावों को अन्डू करना इत्यादि जैसे कार्यों को करने के लिए नीचे कुछ पुश बटन्स हैं
अतः इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे अपने फॉर्म में लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल जोड़ें
चलिए सबसे पहले लिबरऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं यदि वह पहले से नहीं खुला है
और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
यदि बेस पहले से ही खुला है तो हम लाइब्रेरी डेटाबेस यहाँ फाइल मेन्यु के अंदर ओपन पर क्लिक करके खोल सकते हैं
या फाइल मेन्यु के अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके
अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में है
चलिए बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स फॉर्म को खोलते हैं जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था
यह करने के लिए चलिए बाएँ पैनेल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं
और दायें पैनेल पर बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स फॉर्म पर दायाँ क्लिक और फिर एडिट पर क्लिक करिये
हम अब फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं
चलिए सबसे पहले बुक टाइटल लेबल को देखते हैं
ध्यान दीजिये टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ केवल बुकिड संख्याएँ दर्शाएगा जोकि हमारी आँखों के लिए अनुकूल नहीं है
हमारे लिए बुक्स टाइटल्स अनुकूल हैं
और इसलिए इन टाइटल्स को दर्शाने के लिए बेस कुछ तरीके प्रदान करता है और उनमे से एक तरीका है लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल का इस्तेमाल करना
चलिए देखते हैं कैसे
इसके लिए चलिए सबसे पहले बुक टाइटल लाबेल के बगल में टेक्स्ट बॉक्स को हटाते हैं
हम यह टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हैं जो इसे परिचित हरे डिब्बों के समूह से चुनेगा
और फिर दायाँ क्लिक और फिर नीचे कट पर क्लिक करके
यहाँ हमने टेक्स्ट बॉक्स हटा लिया है
अब हम यहाँ एक लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल रखेंगे
इसे फॉर्म कंट्रोल्स टूलबार में एक्सेस कर सकते हैं
हम इसको व्यू मेन्यु और फॉर्म कंट्रोल्स पर क्लिक करके ला सकते हैं
ध्यान दीजिये कि बेस हमें अनेक प्रकार के फॉर्म कंट्रोल्स प्रदान करता है चलिए टूल टिप्स को पढने के लिए अपना कर्सर इन आइकंस के ऊपर रखते हैं
अपना लिस्ट बॉक्स आइकन खोजते हैं
वह यहाँ है इस आइकन पर केवल एक बार क्लिक करते हैं
और माउस पॉइंटर को फॉर्म में ले चलते हैं ध्यान दीजिये कि यह एक पतले प्लस चिह्न में बदल गया है
अब हम अपने फॉर्म में लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल बना सकते हैं
इसके लिए हम अपने फॉर्म में केवल क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करेंगे
इसे वहां रखते हैं जहाँ हमने पहले टेक्स्ट बॉक्स हटाया था
ध्यान दीजिये कि लिस्ट बॉक्स विजार्ड नामक एक नया विजार्ड फॉर्म डिजाइन विंडो के ऊपर खुल गया है
अब यह विजार्ड हमें बुक टाइटल लेबल में लिस्ट बॉक्स जोड़ने में मदद करेगा
चलिए देखते हैं कैसे
इस विजार्ड में सबसे पहले टेबल चुनते हैं जहाँ से हमें बुक टाइटल्स मिलेगा
हम सूची से बुक्स टेबल चुनेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
अब इस विंडो में हमें फील्ड चुनने की आवश्यकता है जोकि लिस्ट बॉक्स में दर्शाई जाएगी
और हम जानते हैं कि टाइटल फील्ड बुक टाइटल्स को संचित करता हैं
अतः अगले स्टेप पर चलते हैं
यह आखरी विंडो है जहाँ हम कुछ अद्भूत करेंगे
हम सम्बन्धित टेबल्स और फील्ड्स को जोड़ेंगे
फील्ड के नाम को देखिये
बायीं तरफ फील्ड्स इन थे वैल्यू टेबल बुक्स इश्यूड टेबल की फील्ड्स हैं
और दायीं तरफ फील्ड्स इन थे लिस्ट टेबल बुक्स टेबल की फील्ड्स हैं
हम यह भी जानते हैं कि बुक इद बुक्स टेबल में मुख्य फिल्ड है और बुक्स इश्यूड टेबल में दिखाई गयी है
अतः हम बायीं तरफ की सूची जो है फील्ड फ्रॉम थे वैल्यू टेबल में से बुक इद पर क्लिक करेंगे
अगला हम दायीं तरफ की सूची जो है फील्ड फ्रॉम थे लिस्ट टेबल में से बुक इद पर क्लिक करेंगे
इस विज़ार्ड को बंद करने के लिए फिनिश बटन पर क्लिक करिये
यहाँ हमने सम्बन्धित टेबल्स और फील्ड्स को जोड़ लिया है
अब बेस लिस्ट बॉक्स में स्वतः ही सारे बुक टाइटल्स दर्शाएगा
अब फॉर्म सेव करते हैं
और इस विंडो को बंद करते हैं
बेस ट्यूटोरियल के अगले भाग में हम अपने फॉर्म में बाकी के फॉर्म कंट्रोल्स को जोड़ना जारी रखेंगे
और हमारा फॉर्म इस तरह से दिखेगा जब हम समाप्त कर लेंगे
यहाँ एक नियत कार्य है
मेंबर आईडीएस के बजाय मेंबर नेम्स के सूचीकरण के लिए एक दूसरा लिस्ट बॉक्स जोड़िए
लिस्ट बॉक्स के स्थान के लिए अभी चिंता न करें
केवल उसको मेंबर नामे लेबल के बायीं तरफ बनाइए
हम अपने अगले ट्यूटोरियल में उसको मेंबर नामे के आगे ठीक से पुनर्स्थापित करेंगे
अब हम लिबरऑफिस बेस में लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पर ट्यूटोरियल में समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे एक फॉर्म में एक लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल जोड़ें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैयह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद